घर है जो कि घर में ये शटर बंद है आधा आधा थोडा सा शटर खुला है। .

मोर हैं जो कि मोर बहुत अच्छा सा लग रहा हैं मोर और बेठ के अपना अम उड़ने का प्रयास कर रहा हैं|

और ढेरी सारा ये सब कुछ काक्या रखा गया है जो बहुत प्यारा लग रहा है|

जो कि खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है सिधरी मछली और आ बहुत अच्छे-अच्छे सब मछलियाँ रखे हैं लोग दो जेंट्स हैं लोग जो कि खड़े हैं लोग।

और छठ माई के पूरा अरग-अरग देने जा रही है लोग ऐसा लग रहा है कि --